यह तस्वीर एक ऐसे दुकान की है यहाँ पर डेली नीड्स की सामाने मिलती हैं यहाँ पर दो --

आइसक्रीम फ्रिज जो कि टॉप एंड टाउन कंपनी के हैं रखे हुए हैं तथा एक बड़ा फ्रिज जो कंपनी --

यह तस्वीर एक झरने की है जहाँ पर पानी की धारा बड़े बड़े चट्टानों से--

जो किसी शादी पार्टी या फंक्शन में गया हुआ है और अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

यह तस्वीर एक साड़ी के दुकान की है जहां पर दो साड़िया--

इस ढाबे का नाम ग्रीन लाइट --

यहां पर गार्डन एरिया में इस तरीके से खाने--

तीन रंगों से मिलकर बना हुआ है इस गार्डन का नाम बसंत विहार गार्डन है।

यह तस्वीर एक हॉस्पिटल की है जहां पर एक वार्ड बॉय एक डॉक्टर तथा--

एक सभा को संबोधित कर रहे हैं।

पांच लड़कियां मैट में योगा कर रही है तथा अपने आप को आईने में देख रही है।

व आइक आने के लिए सीढ़ी का रास्ता तथा कुछ कपड़े धोने के लिए एक मैट बना हुआ है।

ऐसी जगह की है यहां पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं।

चेहरे का फेशियल करवा रहा है तथा वह आईने से फोटो भी ले रहा है।